टब रख्यां दुकान भीतर हमे चिप्स दिखेण लग्यां कुरकुरा दिखेण लग्यां नमकीन दिखेण लग्यां टॉफ़ी दिखेण लगीं चॉकलेट दिखेण लगीं क्रैक्स दिखेण लग्यां और ये दुकान का भीतर हमे --

अ ये पहाड़ पर हमे हर्या-हर्या घास दिखेण लगी बड़ा बड़ा लम्बा लम्बा डाला दिखेण लग्यां और ये पहाड़ का ऐंच हमे आसमान दिखेण लग्युं आसमान पर बादल लग्यां।